जिसके पीछे एक नीले कलर का बस खड़ी है।

और एक आदमी बाइक लेके खड़ा है।

और दो पेंटिंग रखे हुए हैं और एक ए_सी लगी हुई है।

जिसमें कुछ औरतें बैठे हुए हैं।

इसमें कुछ नलकी लगे हुई हैं स्टील के।

जिसमे नीचे कुछ शीशे का गेट लगा हुआ है।

और एक रेड कलर का कार खड़ी है।

और कुछ मूर्तियां भी खड़ी है।

और एक लोहे की ग्रिल बनी हुई है।

अंदर एक पंखा भी लगा हुआ है।

और कुछ आदमी भी खड़े हैं आस पास कुछ हरे भरे पेड़ हैं।

और एक कूलर भी है और एक पंखा भी रखा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें बहोत सारी मेज रखी हुई है।

उनके मेज के ऊपर कुछ टिशू पेपर रखे हुए हैं।

जिसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है।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

इसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

और आस पास कुछ हरे भरे पेड़ हैं।

और उसके आस पास कुछ फूल भी लगे हुए है।

यहां पे एक घड़ बना हुआ है।

नीचे कुछ सोफे भी रखे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारी लोहे की कुर्सी रखी हुई है।

और इसके आसपास कुछ हरी भरी घास खड़ी है।